एवं यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं पीछे एक बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है।

यहां पर इस आदमी ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई है।

और एक हाथ में घड़ी भी नजर आ रही है एवं पीछे एक बड़ी चट्टान नजर आ रही है।

एक झंडा दिखाई दे रहा है जिसका रंग लाल व सादा में दिख रहा है।

यह दृश्य किसी कार सर्विस सेंटर का नजर आ रहा है ।

यह दृश्य किसी ए_टी_एम बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं यहां बस कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

यह किसी हॉस्पिटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पीछे टाइल्स नजर आ रही है जिसका रंग लाल व सादा में दिख रहा है ।

यह दृश्य किसी ठेले का नजर आ रहा है।

जहां पे एक वाइट कलर की बस भी खड़ी दिखाई दे रही है।

एवं पिलर के पास एक पाइप भी टंगी हुई दिख रही है।

इधर एक औरत ने साडी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

तथा बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह एक अस्पताल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह किसी मैदान का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति चलते हुए जा रहा है।